पंडाल की तस्वीर है जहां पे पंडाल को बहोत अच्छे तरीके से सजाया गया है रेड येल्लो कलर मे सजाया गया है और व्हाइट कलर की सारी टेबले जमीन मे पड़ी हुई हैं।

--और बहुत सारी कुर्सी मे बीच मे से रास्ता है ग्रीन कलर का कारपेट बिछा है एंट्री गेट को फ्लावर से सजाया गया है बीच मे उसके बडा सा व्हाइट कलर का झूमर है।

पार्क की तस्वीर है यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं बहोत घने घने से पेड़ हैं बहोत लोगो की भीड़ हैं।

--खेत की तस्वीर है खेतो मे हरा-हरा घास उगा हुआ है और किनारे -किनारे इसके बडे घर है यह किसी गाव की तस्वीर है जहा पे हरे-हरे पेड उगे हुए हैं

छोटा-स तालाब है जहां पर बहुत सारी गंदगी है और कुछ बईके खड़ी हैं।

खेत की तस्वीर है जहां पर एक आदमी खेती कर रहा है खेतों मे पानी डाल रहा है।